और यहा एक औरत खड़ी है। जो रेड कलर का साड़ी पहनी हुई है। और दूर मे बड़े बड़े दरख्त है और सूरज डूप रहा है।

और सामने दरवाजा है और बहुत सारे पड़े पौधे--

प्रकार की मछली है और सामने में एक लेडिस ब्लैक अँड रेड कलर का साड़ी पहन कर मछली सेल कर रही है।

ये एक बहुत बड़ा विशाल मछली है जिसका रंग ग्रे अँड पिंक कलर का--